तो हमलोग इनकी फुल रिस्पेक्ट करे।

की हम सब देख रहे है की यह एक पार्सल --

ये पवित्र स्थल है जहाँ पे लोग अपनी मन्नते या मुरादें मांगते हैं।

तो ये एक मैरिज हॉल हैं यहाँ प्रदर्शन करते हैं।

यहाँ से लोग कम समय बैंक ना जाकर यहीं से पैसा निकालना उचित समझते हैं क्यूंकि यहाँ पे कोई झंझट नहीं होती बस कार्ड को स्वाइप करना होता हैं पैसा आराम से निकल जा --